बहुत सारी कुर्सियां रखी हुई हैं और --

यहाँ एक हाॅल दिखाइ दे रहा है।

और उसके सामने बोर्ड पर चिल्ड्रन बुक्स --

और अहां ईंटों से चारों तरफ गोल गोल बाउंड्री भी बनाई गयी है।